और चारों तरफ लोग हैं एक छोटी बच्ची बिल्कुल सामने --

बगल में माथुर एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का बोर्ड भी है।

ब्लू दिख रहा है गेट पर भी दो तरीके के कलर किए हुए हैं।

और पीछे कोई बाउंड्री वॉल भी दिखाई दे रही है सामने एक रोड है।

किले के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियां जिसमें अच्छे से दिख रही है।

बिल्डिंग के ऊपर शीशे भी लगे हुए हैं।

जिसमें दो येल्लो साइकलिंग मशीनस भी दिखाई पड़ रही हैं।

कोई राधे दानमोदर जी मंदिर बनी पार्क जयपुर है।

सामने स्टाफ मेंबर्स ने खड़े होकर फोटो खिंचवाया है।